बहुत सारे चेयर दिखाई दे रही है।

बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

उसके अंदर काफी सारी बड़ी बड़ी मशीने रखी हुई है।

डी_जे दिखाई दे रहे हैं।

यह है एक बहुत बड़ा--

लोहे की ग्रिलै दिखाई दे रही है।

यहाँ पर मुझे एक बाज़ार दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे सोफे दिखाई दे रहे हैं।

इस दुकान में मुझे एक काफी सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां पर बहुत बड़ा समुंदर दिखाई दे रहा है।

छोटे छोटे गमलों में पेड़ रखे हुए है।

ऊपर कुछ कलश दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे एक बड़ा सुंदर पार्क दिखाई दे रहा है।

आदमी दिखाई दे रहा है।

नीचे एक सब्जी की बेल दिखाई दे रही है।

एक सूखे पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दे रही है।

जिसमें माता की तस्वीर दिखाई दे रही है।